इसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जिनके सिर पर वो टोपी है।

किसी ने साड़ी पहन रखी है।

सबके आदमियों के जोकि सिर पर हेलमेट लगे हुए हैं।

और कुछ आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

र खंभे पर दोनों तरफ को तार जा रही हैं।

एक तकिया रखा हुआ है।

जो कि हिडन किया हुआ है।

पर एक छपड़ा रखा हुआ है।

जोकि उन्हें कुछ बता रही है।

सामने कुछ झालर पड़ी हुई हैं।

पीछे कुछ बाइक और कुछ कार भी दिखाई दे रही--

और एक दीवार से लगी हुई साइकिल भी खड़ी है।

पर्दे रंग बिरंगे हैं और उस पर कुछ फूल भी लगे हुए हैं।

घर के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है।

सामने एक लाइब्रेरी दिख रही है।

की ब्लैक और रेड कलर का है।

लगी हुई कुर्सी दिख रही है।

बैलून ल लाल कलर के व सफेद कलर के हैं।

और पीछे शीशे की खिड़की लगी हुई हैं।

इन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

इस फोटो में सामने कुछ सरकारी दफ्तर दिखाया गया है।

जोकि फोटो के बिल्कुल नजदीक है।

इनके मुंह नहीं दिखाए गए।

इस फोटो में सामने कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

जो बिल्कुल सीधे काउंटर लाइन वाइज लाइन रखी गई हैं।

उनके पास में एक कार खड़ी हुई है।

बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जो कि ब्रूस ली का लग रहा है।

जो कि ऊपर की तरफ को जा रही है।

इस फोटो में सामने एक बेकरी दिखाई गई है।

सामने कुछ मेनू कार्ड वगैरा रखे हुए हैं।

एक लड़के का स्टेचू दिखाया गया है।

जो कि कुछ करतब दिखा रहे हैं।

जोकी परचून की दुकान है।